कुछ बाइक भी स्कूटी भी साइड में पार्किंग में खड़ी हुई हैं।

कुछ साइकल्स खड़ी हुई हैं।

आदमी के हाथ में फीता है।